इसमें एक टेबल लगा हुआ है उस टेबल पे हेल्मेट रखा है और बाजू में बैठने के लिए सोफा है।

साइड में रेलिंग लगी हुई है और सीधे ही अंदर एक रोड गई हुई है एक मकान की तरफ और उस रोड के बाजू में --

और कुछ लोग गार्डन पे बैठे हुए हैं और गार्डन के पीछे काफी सारे घर हैं।

यह एक कपड़े की दुकान की तस्वीर है यहां पे कपड़े रखे हुए हैं।

और एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है।

ये स्टेज पर नृत्य कर रहे हैं।

वो फोटो चला फोन चला रही है।